कोई ड्राइंग कर रहा है कोई पढ़ रहा है कोई खेल रहा है मास्टरी सर पढ़ा रहे है देख सकते है कई सारे मास्टरनी मास्टर भी है नीचे के साइड में देख सकते है जांलवी है जोकि बहोत ही अच्छा बनाया गया है नीचे में एक पेड़ भी है जोकि बहोत ही अच्छा--

नई देख के लगता हैं आप को यहाँ हॉस्पिटल है देख सकते हैं नया-नया खुला है कई तरह के आदमी देखने के लिए आए हुए हैं देख सकते हैं बहोत सारे आदमी यहाँ पे हैं फोटो क्लिक कर रहे हैं निया खुला है ।

हॉस्पिटल देख सकते हो बोहोत ही यहां पे पुलिस भी हैं बोहोत ही अच्छा से सजाया देख सकते हो फूल गुलाब फूल बोहोत ही अच्छा अच्छे फूल से सजाया हुए हैं एक तरफ के लाइट्स वगेरा--

उसके साइड में भी देख सकते हैं बहुत सारा यहां पे पेड़ बनाया गया हैं हरा-भरा बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं कई तरह के पेड़ हैं आम जाम बहुत ही अच्छे-अच्छे पेड़ हैं निचे के साइड में भी देख--

बहुत कुछ यहाँ पे मिलता हैं देख सकते हैं चाय दुकान भी हैं बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा हैं यहाँ से--

ऊपर के साइड में कई सारे पोस्टर भी लगे हुए है और नीचे में बहुत सारा आदमी यहाँ पे बैठे भी है कोई बेड पर भी सोया हुआ है कहीं ऊपर में देख सकते है यहाँ का नजारा बहुत अच्छा से--

यहाँ पे दुकान चला रहा है बहोत सारा है आदमी यहाँ पे खरीदने के लिए आए हुए है देख सकते है यहाँ सब कुछ मिलता है चूड़ी कंगन ऊपर के तरफ देख सकते है बड़ा-बड़ा लाइट पंखा वगेरा बहोत कुछ लगाया हुआ है आदमी यहाँ खरीद रहा है एक आदमी दे सकते--